और यहां पे बाहर के साइड में कई सारे बैलून से सजाया गया है।

फैन भी दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड में लाइट दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ शो के झूमर दिखाई दे रहे हैं और सामने की तरफ तरफ एक भगवान का मंदिर दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही बिल्डिंग के सामने--

यहां पे कई सारे बॉक्स पड़े हुए हैं साइकिल कई--

बिल्डिंग काफी और आइसक्रीम कलर में देखने को यहां पे --

यहां ये चित्र में ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड के आजू बाजू में हरी भरी घास देखने को मिल रही है।

यहां पे कई सारी बिल्डिंग भी देखने को मिल रही और पेड़ भी देखने को मिल रहे है।

यहां पे कई तरह के केक पेस्ट्रीज वगैरा रखी गई है।

इस चित्र में रोज देखने को मिल रा हैं यहां पे दस रोज है।

मैट जैसे देखने को मिल यहां पे फूलों के ऊपर सफेद सफेद देखने को मिल रहा और बाजू में कुछ पीले कलर के फूल देखने को मिल रहा --

और कई सारे लड़के यहां पे फुटबॉल खेलते हुए देखने को मिल रहे --

और सामने की तरफ बड़े पेड़ देखने को मिल रहे।

और यहां पे लड़कों ने कई तरह की अलग अलग टी शर्ट पहनी हुई है।

जिसने पीले कलर की टी शर्ट और कैप पहनी हो सामने की तरह में औ --

और यहां पे बाइक भी दिखाई दे रही है और यहां पे --

और यहां पे एक पोस्टर भी देखने को मिल रहा और यहां पे एक रोड भी देखने को मिल रहा है।

और यहां पे कई सारे वायर दिखाई दे रहे हैं।

घास कटिंग मशीन भी देखने को मिल रही और यहां पर रोड के बीच में एक --

इस चित्र में एक ए_टी_एम दिख ए_टी_एम दिखाया गया है और वो।

और यहां पे बैलूंस भी देखने को मिल रहे दो वाइट बैलून हैं और एक --

यहाँ पे कई सारी अलग अलग तरह बिस्किट रखीं गई है।

और शॉप के बाहर एक आदमी फोन पे बात करते हुए दिखाई दे रहा है।

और यहां पे पानी का फव्वारा दिख रहा है और साइड में एक --

झरने में से पानी बहता हुआ दिख रहा है पानी का कलर व्हाइट कलर का है।

यहां पे एक व्यक्ति देखने को मिल रहा है जिसने लाल कलर शर्ट पहने हुई--

काउंटर के बाजू में एक बॉक्स रखा गया। बॉक्स पे एक थैली रखी हुई है।

और यहां पे ऊपर के साइड में एक वॉच दिखाई दे रही है।

होटल के सामने दो फोर व्हीलर कार और दो बाइक रखी गई है।

और यहां पे एक डस्टबिन भी देखने को मिल रहा है और यहां पे।

कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे और यहां पे एक--

और यहाँ पे चर्च उसके सामने में कई सारे बिजली के वायर दिखाई दे रहे हैं।

सामने की तरफ में कई सारे झाड़ दिखाई दे रहे हैं और यहां पे--

और गार्डन में यहां पे पाइप भी पानी की पाइप देखने को मिल रही है और सामने यहां पे कंपाउंड देखने को मिल रहा है।

और वहां पे एक डंपर खड़ा हुआ दिख रहा है।

इस चित्र में दो ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है।

और एक आदमी यहां पे खड़ा हुआ है जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है।

और ऑटो में बैठे हुए आदमी ने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी और उसके --